हां देखिये पत्थर पत्थर बहुत ज्यादा पत्थर दिख रहे हैं नीचे मे धान सब रोपे हैं बहुत ही ऊँचा है।